एक इमेज में बहुत से पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं घर भी दिखाई दे रहा है।

यह इमेज एक फिल्ड मार्केट की है।

इस इमेज में बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही --

इस इमेज में एक बच्चा पाइप से पानी पिला रहा हैं।

यहां पर लोहे की सरी दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति जा रहा है एक छोटा कमरा दिखाई दे रहा।

इस इमेज में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे अलग अलग तरह के--

प्रतिमा दिखाई दे रही है मंदिर को सजाया गया --

यहां एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है यहां हरा बोर्ड भी --